यहां पर एक होटल हैं और यहां पर कुछ आदमियां ठहरे हुए हैं।

उसमें कुछ फल है और कुछ दूसरी चीज है इन--

कार के अंदर के सारे औजार दिख रहे हैं।